गोकुल सुपर बाजार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाइट कल की बिल्डिंग नजर आ रही है। कांच के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

सामने पेट्रोल पम्प नजर आ रहे जिसमे मशीनें दिखाई दिखाई दे रही है।

ग्रीन कलर का दीवाल नजर आ रहा है।

रेड कलर का छावनी दिखाई दे रहा है एक कुर्सी रखी हुई नजर आ रही है ब्लू कलर की अलमारी दिखाई दे रही है।

सामने एक स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही--

बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इसके हाथ में ब्लैक कलर का बैग दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का डस्टबिन नजर आ रहा है जमीन में घांस लगी है।

ब्लैक कलर की चेयर दिखाई दे रही है।

सामने यहां फ्लावर की शॉप नजर आ रही है वाइट कलर की दीवाल में--

सामने एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है व्हाइट कलर की दीवार नजर आ रही है एक बड़ा सा व्हाइट कलर का कुलर दिखाई दे रहा है।

साइड से सीढ़ी दिखाई दे रही है सीढ़ी के बाजू--

बाहर दो लोग जाते हुए दिखाई दे रहें हैं सीढ़ी बनी हुई है साइड में ब्लैक कलर की बोर्ड में--

स्कूटी और कार खड़े हुए नजर आ रहे--

सामने रोड दिखाई दे रहा है जहां बारिश होते हुए नजर आ रही है पिलर्स दिखाई दे रहे हैं जिसके बाजू में दो बाइक्स खड़ी हुई नजर आ रही है।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

व्हाइट कलर के चेयर नजर आ रहे हैं जमीन में वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।